शिवाय शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय लाल बिल्डिंग है ओम नमः शिवाय कोटक की बिल्डिंग है सवाय सवाय बिल्डिंग है।

बहुत बड़ा घास का मैदान है न्यूक्लियर प्लांट है हरे भरे मैदान है हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

एक दो तीन चार बहुत सारे आदमी खड़े हैं पलंग पे पीछे कुर्सी है बहुत सारे आदमी समारोह में बैठे हैं।

टेबल है कचरा बहुत सारा आसपास में है।

यहाँ एक ऑफिस के बाहर तीन चार आदमी खड़े हैं।

वीवो का शोरूम है वीवो का मोबाइल है वीवो का दुकान है ओप्पो की दुकान है मोबाइल की दुकान है।

राधा कृष्ण की मूर्ति है भगवान की मूर्ति है बांसुरी पकड़े हुए हैं माला है लाइटिंग है बहुत सारी लाइटिंग है।

बहुत सारा पेड़ पौधे हैं पेड़ ही पेड़ है गार्डन है मंदिर है पेड़ है।

मूर्ति बिल्डिंग हाइटेक बिल्डिंग बिल्डिंग के अंदर हाईटेक है हाईटेक --

पौधे हैं एक खाली ग्राउंड है इशटेज बना हुआ है कुछ भी नहीं है गाउ ग्राउंड के अंदर ग्राउंड के अंदर स्टेज बना हुआ है।

सोलर पैनल लगा हुआ है छत के ऊपर छत के ऊपर--

एक रेलवे स्टेशन है ऊपर पटरी लगी हुई है रेलवे स्टेशन के ऊपर पटरी है पटरी के ऊपर रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है।

बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर नदी है।

कुर्सी है टेबल चेयर टेबल कुर्सी नदी है आसमान है बहुत सारे पेड़ है।

मदरासी डोसा मंदरासी डोसा --

टेबल है बिल्डिंग है मद्रासी डोसा --

नदी है दो पत्थर हैं पेड़ हैं पौधे हैं।

पेड़ भी पौधे भी है घर भी है बहुत सारे घर हैं पेड़ पौधे घर हैं बहुत सारे घर हैं।

बिल्डिंग है टेबल है कुर्सी है।

चेक ये मेनू डिश है जिसमे चॉकलेट पड़ी है लाल चटनी है।

चम्मच है टेबल पर ब्लैक कलर की चद्दर है।

रिलायंस मॉल के ऊपर पंजाबी अक्षर लिखे हुए हैं।

पंजाबी अक्खर है अक्खर है अक्खर है।

खाली रोड है रोड के ऊपर खाली रोड है एक आदमी जिम के अंदर बैठा है पता नहीं क्या कर रहा है जिम के अंदर अंदर ही अंदर है।

चेयर हैं टेबल हैं कुर्सी हैं पेड़ हैं पौधे हैं टेबल हैं चेयर हैं।

खाली ऑफिस है वहाँ ब्लैक कलर की चेयर है खाली ऑफिस है वहाँ ब्लैक कलर की चेयर है सामने वाइट कलर का --

वो है कुर्सी है टेबल है दो डोर है वाइट कलर का --

प्रेस है दुकान है कुर्सी है टेबल है चेयर है चेयर है ।

सब्जी मंडी हैं उसमें मिर्च पड़ी हैं।

सब्जी मंडी में तीन चार कट्टे पड़े है मिर्ची के.

गेट है खिड़की है ब्लू कलर की दीवार है.

बेकर्स वेला बेकर्स वेला --

कांच है रेड कलर की लाइट है जिम में तीन लड़कियां बैठी है।

खाली मैदान है पेड़ है दीवार है दो बोर्ड लग रहे हैं ब्लू कलर का पर्पल कलर का बोर्ड के ऊपर बोर्ड है बोर्ड के ऊपर बोर्ड है.

एक आदमी खड़ा है पारक है पेड़ है पौधे है.